टेबल के ऊपर छः प्लेट रखा हुआ है जो की सफेद कलर का है।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो की हरे भरे हैं।

एक घर भी दिख रहा है जोकि सफेद कलर का है।

एक सामने एक पीला कलर का कुछ दिख रहा है प्लास्टिक --

सामने एक गमला दिख रहा हैं जो कि इसमें एक पेड़ है।

पीछे एक आदमी है जो की खंभे के ऊपर खड़ा है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जिसमें बहोत सारे पोस्टर लगे हुएं हैं।

सामने एक आदमी दिख रहा है जो कि हरा का का शर्ट पहना हुआ है।

ऊपर पीले रंग का लाइट है।

ये कोई घर के बाहर का दृश्य है।